इस दृश्य में बहोत से व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और एलबस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

जिसका क्लर ग्रे और ब्लैक नजर आ रहा है।

और बहुत सी कंप्यूटर भी नजर आ रही है।

और बहुत से चेयर भी नजर आ रहे हैं और टेबल भी नजर आ रही है जो की लाल रंग की है।

और आसपास में बहुत से पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

साड़ी का रंग पर्पल ब्लू पिंक ग्रीन रेड नजर आ रहा है।

एक स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा--

यह दृश्य एक वॉटर पार्क का नजर आ रहा--

इस दृश्य में एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

और छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स भी सीढ़ियों पे रखे हुए नजर आ रही है।

जिसका रंग ग्रीन है और आस पास में बहुत से पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे यमाहा भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर की कारपेट भी बिछी हुई नजर आ रही--

और आस पास में बहुत से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक स्टैचू भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

साइड में एक पीले रंग की मशीन भी दिखाई दे रही है।

और एक कॉन्टर भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

बहोत से व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और फैन भी लगी हुई नजर आ रही है और लाइट भी जलती हुए नजर आ रहा--

यहां पे हमें बहोत से अलग अलग तरीके के फल नजर आ रहे हैं।

अनार संतरा सेव वगैरा नजर आ रहे--